इनमे पोस्टर भी लगे हुए है।

ये रेड का एक रूम है।

फोटो खींचा रहा है।

यहाँ इस रोड पर तीन लोग--

और पूल पर रेल का फाटक--

उँह डी_जे के चोंगे--

पेड़ और कुछ गाड़ी और बहुत दूर में कुछ बड़े-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे है।

पत्ते बड़े-छोटे पेड़ दिखाई दे रहे--

इस जगह पर बहुत लाइटियाँ गाड़ा पेड़--

पार्क पर तीन बोट बड़े-बड़े गेट एक छोटे गेट और बड़े-छोटे पेड़--

एंट्रीगेट पर एक डब्बे और साथ में एक बाइक और एक इंसान खड़ा है जिसमें डेड पत्ते लगे हुए है।

तालाब में बहोत ही अच्छे फूल खिले हुए है ।

और कार खड़े है और स्कूल के ऊपर तरफ--

कुछ पेड़ और पेड़ बहोत से बड़े-छोटे पेड़ और पत्थर दिखाई दे रहे है।